लिखा हुआ है नीचे बोहोत सारी गेंद रखी हुई हैं जाली बनी हुई है।

उसमें दो तीन जेन्ट्स खड़े हुए हैं।